इस चित्र में हमें एक हॉस्पिटल की एम्बुलेंस नजर आ रही है तथा एक रेड कलर की अ कार भी नजर आ रही है तथा --

तथा काफी सारी गड़िया खड़ी हुई दिखाई दे रही है तथा कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

खुला आसमान दिखाई दे रहा है तथा कुछ दूरी पर पेड़-पौधे लगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।